और उन्हें काफी सहाय प्रोत्साहित करते हैं।

जैसे यू.पी.एस.सी. आई.ए.एस. ऐसी कोचिंग क्लासेस होती हैं।